यह किसी अपार्टमेंट का लग रहा है जह जो कि जो कि बहुत बड़ा मंजिला है और मंजिले के आसपास पेड़ हैं जो कि बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

बाग प्रकार के रखे गए हैं और एक टूह --

यह प्रकार के प्रयोगी की की प्रयोगी का कार्य लगाए गए हैं।

यह प्ले प्लेन के पास जाने के लिए बैग रखे हुए हैं।

--और इसके आस-पास बीम में भी लोहे की समान नजर आ रही --

और यहाँ पे केले अपने केला को भी टंगा हुआ है।

और इसके आसपास लोग जा रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बुके रखे गए है जहां पे पंखे लाइट इ बर रहै हैं और यहां एक गणेश जी का मूर्ति रखे गए है।

और ये मूर्ति काफी अच्छी लग रहे है इसके साइड साइड से दो गमले रखे गए लगाए गए हुए हैं।

यहाँ एक बंदा अपने बालों के ऊपर डिजाइन बनाया हुए है और उसके पास में एक व्यक्ति वहां कुछ कर रहे हैं और इसके आसपास में बहुत सारे समाने रखें हुए हैं।